इस इमेज में सामने दो हरे और नीले रंग की ई-रिक्शा दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में सामने एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दे रहा है।

सामने में रोड दिखाई दे रहा है।

ऊपर में और आजु-बाजु सफेद रंग का टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।